कार भी है बाइक भी है यहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है।

यहां पर देखिए ये एक ऑपरेशन थिएटर है।

यहां पर एक ऑपरेशन थिएटर है।

और इस मशीन के तेल है सारा सामान है।

बोर्ड भी लगा हुआ है बहुत से प्रदर्शन दिखाई दे रहा है।

यहां पर देखिए एक सुधा पॉपुलर है।

यहां पर देखिए ये एक दुकान है।

इस रूम में दो दरवाजे भी हैं।

गाड़ी पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है।

बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है।

सब बच्चे अपने कार्य में लगे हुए हैं यहां पर देखिए बैंचें भी है।

बहोत सारे रंग बिरंगे फूल भी है।

सोफे भी धरे हुए हैं।

एक मैन भी खड़ा है जिसे कैमरामैन कहा जाता है।

दीवार पर कुछ बोर्ड टंगे हुए हैं जिनमें कु स्केच के पिक्चर्स लगे हुए हैं।

और बहुत सारे मैन हैं।

बहुत सारे पत्थर है पेड़ पौधे हैं।

यहां पर मकान का काम हो रहा है।